और इधर कुछ साइड में सामान-ओमान भी रखा हुआ है और यहाँ पर एक सिटी रिक्शा है।

यहाँ पर बाइक है बाइक है दो नो पेसन का ही बाइक है इधर देख सकते है कुछ रंजन वंजन साइकल भी लगा हुआ है ।

और यहाँ पर कुछ ए.टी.एम. वगेरा लग रहा है बगल में और कुछ शॉप वोप भी है और पीछे भी एक गाड़ी है ।

और यह बहुत ही बड़ा जगह लग बड़ा जगह तो नही है और यहां पर बहुत ही भीड़-वीड़ लगा --

और इधर ट्रक व्रक भी लगा हुआ है और उधर भी एक जीप है।

और इधर देख सकते है कुछ गाछी-वाछी भी है और बहुत ही अच्छा लग रहा और इधर भी कुछ आदमी वादमी एक ट्रक व्रक तीन-चार ठो एक लाइन से ही है।

और इधर कुछ टेम्पो - उमपु भी है और इधर भी कुछ यह घर ओर लग रहा है और ये बहुत ही सूंदर है और उधर टावर - आवर भी लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ --

देख सकते है ये रेलवे स्टेशन है और यह प्लेटफॉर्म नंबर पांच है और यह बहुत ही बड़ा प्लेटफार्म है और बहुत ही सुन्दर कलर किया गया है छपरी पर।

स्टेशन का लग रहा है और बगल में टमटम वमटम भी है और वहां पे घोड़ा-वोड़ा लगाया गया है।